आगे कुछ बड़ा सफ़ेद कलर का बिल्डिंग देखा जा सकता है आगे भी कुछ बैरि॑केड्‌ जैसा दिया गया है आगे रोड देखा जा सकता है जिस पर सफ़ेद कलर की लाइनिंग की गयी है।

यहाँ पर एक पेट्रोल पंप जैसा कुछ देखा जा सकता है जिसके ऊपर कुछ ब्लू कलर से पेंट किया गया है तथा सबसे नीचे कुछ लाल कलर सा बाउंडरी किया गया है जिस पर कुछ सफ़ेद कलर से लिखा गया है ऊपर का दीवाल सफ़ेद कलर का देखा जा सकता है कुछ बड़े बड़े टॉवर जैसा कुछ लगाया गया है जिन पर--

ये अभी एक रेल्वे स्टेशन का द्रु द्रुष्य दिखाई दे रहा है जिसके पीछे एक मालगाड़ी खड़ी हुई है उसकी खिड्किया खुली हुई है उसवा खाली दे रही है उसका कलर लाइट दिखाई दे रहा है पीछे कुछ--

यहा पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है ऊपर ब्लू कलर का आकास देखा जा सकता है बगल मे कुछ गाड़िया खड़ी देखी जा सकती हैनीचे धरती देखी जा सकती है।

एक टाइमिंग जैसा कुछ काला कलर का डिब्बा जैसा देखा जा सकता है। जिस पर कुछ लाल कलर से टाइमिंग दिखा रहा है। ऊपर कुछ सफ़ेद कलर का जैसे किया गया है जिन पर ब्लू लाल कलर से कुछ लिखा गया है। ऊपर आकाश साफ देखा जा सकता है।

यहा पर बहुत सी ट्रेने एक साथ खड़ी देखि जा सकती है यह ट्रेनों की भोगीया भी देखि जा सकती है इंका कलर ब्लू आ सफ़ेद देखा जा सकता है उपर ब्लू कलर का आकास देखा जा सकता है जिसमे कुछ बादल जैसे हल्के देखे जा सकते है।

यहा पर भी एक बड़ा सा पोस्टर जैसा कुछ बनाया गया है जिसका कलर ब्लु दिखाई दे रहा है ऊपर सफेद कलर से कुछ लिखा गया है कुछ लड़कियों खड़ी देखी जा सकती है कुछ लोग भी खड़े देखे जा सकते है।